जो की एक नदी की हैं इस नदी में कई सारी बोटें --

रही है और यहां पर हर तरह की बोर्ड रखी हुई--

चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां पर--

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर--

एक तस्वीर खींची गई है जो की दुकान की है दुकान की अंदर के खाने की है।

और यहाँ पर पास ही में एक जग भीं रखा हुआ हैं।

खिंची गई है जो कि दुकान की है।

और यहां पर एक घर भी बना हुआ है।

इस चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर--

अगर कोई भी इसके बीच से निकले तो वह गीला हो सकता है।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

इस दुकान में कई सारी किचन के सामान रखे हुए हैं जैसे गैस स्टोव --

खीची गई है ज जो कि एक--

चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां पर--

इस दुकान में कांच बनाए जाते हैं और यहां पर।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

एक तस्वीर खींची गई है जोकि जोकि एक--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

चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां पर--

खींची गई है जो की दुकान की है।

और यहाँ पर अलग अलग रंग अलग अलग पैटर्न की भी साड़ियाँ रखी हुई। --

हम देख सकते हैं कि यहां पर--

इस दुकान में कई सारी बुक्स पेन्स कलर --

और यहां पर खाने पीने की चीजें मिलती है।

चित्र में हम देख सकते हैं कि यहां पर--

कई सारे लोग आ जा कर रहें हैं।

अलग अलग क्लास और अलग अलग सब्जेक्ट की लग रही हैं।

हम देख सकते हैं कि यहां पर--

चित्र में हम देख सकते है कि यहाँ पर--

हम देख सकते हैं कि यहां पर--